और काफ़ी सारे मजदूर जो हैं वो काम में लगे हुए हैं। दूर में हरे-हरे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे में हरे-भरे पेड़ हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं। एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है।